फिर चित्र में एक बॉल्ब देखे रहा है और बहुत साडी आदमी दिक् रही हेथीं बसस्टैंड दिक् रहा हे ओवर बिल्डिंग दिक् रहे हे --

इस छात्र में तीन आदमी क्या जनक जनक जनक रहे है।

घडी हे देखनेमें बहुत कूप कूप सूरज हे --

इस चित्र में एक बड़ा सा कबूतर दिख रहा है और एक गेट दिख रहा है और देखने में बहुत-बहुत खूबसूरत है।

एक पर्दा दिखाई दे रहा है टेबुल दिखाई दे रही देखने में बहुत-बहुत खूबसूरत है |

करने को इस चित्र में और एक मिशिन दिख रही हे और टी_व्ही दिख रही हे और और कप दिख रहा हैं। और पिने की--

और झाड़ो दिख रहे हे और दिख रहे और देखने में बहोत बहोत खुबसुरत हे |